है ब्लू सी टी-शर्ट पहने हुए है नीला पेंट पहना हुआ है हाथ में कागज रखे हुए --

इस इमेज में मुझे शुक्र देव मुख मुकलाल --

जो कि शक्कर की है और एक कढ़ैया दिखाई दे रही है।

और थोड़ा सा पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है हरा-हरा --

दिखाई दे रहे है ग्राउंड में हरी-हरी घास लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज में मुझे ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।

और अपने सिर पर एक बोरिया रखे हुए है बोरी में कुछ सामान रखे हुए दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में मुझे एक बी.आई.जी. एन.ए.एन. बी डबल ओ के सी.इ.एन.टी.इ.आर. सेंटर एस.टी. --